बीच में सोफा लगा हुआ है और टेबल है आजू बाजू में तीन तीन चेयर लगाई हुई है।

बीच में एक आदमी दिख रहा --

यहां दृश्य में काफी सुंदर हमें क्लिनिक दिख रहा है।

हमें यहां पर कुछ लोग झोपड़ी बनाकर अंदर टेंट बनाए हुए दिखाई दे रहे है।